बिल्डिंगों को पेंटिंग कलर जो हैं वो व्हाइट कलर में दिख रहा हैं यहां पर कुछ छोटे-छोटे ग्रीन कलर के पौधे वगैरह दिख रहे हैं और आस-पास में यहां कुछ लाइटें जल रही हैं जो की ग्रीन कलर में जलती हुई दिख रही हैं कुछ व्हाइट कलर में दिख रही हैं।

जाते हुए दिख रही है और यहां पर जो है कुछ मेंटल वगैरा बनी हुई दिख रही है और यहां पर आसपास में कुछ बाउंड्री दिख रही है जो वाइट कलर में दिख रही है|